यह एक पुराना मोटरबाइक है और काफी स्टाइलिश मोटरबाइक है जो गैरेज में है।

अ अ हरा रंग के कार्पेट बिछाया गया है।

और अअअ पेंट जो हैं पेंट उ --

और यहाँ पे कुछ सेरेमनी कुछ ऑकेजन टाइप का जो दिख रहा है।

इसको फेंसिंग किया गया है शट अ लोहे का रड से फेंसिंग हरे रंग का।

यह एक कपड़े की दुकान है जहां पे विभिन्न प्रकार के अंडरगारमेंट जैसे जाँघिया हो गया गंजी हो --